यह बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है यह कप है जो की ब्लैक कलर की कप है और जो चम्मच है वो भी ब्लैक कलर की है।

यह एक बुद्ध भगवान का मंदिर है जो की बुद्ध भगवान के मूर्ति से बना हुआ है और यह ब्लैक कलर की है और ये --

और ये तालाब से में से पकड़ता है और ये तालाब है यह बहोत ही --

यहाँ पर एक साइकिल भी लगे हुए है पांच-छे बाइकें है।

बढ़िया-बढ़िया ड्राइंग बना रहें हैं बगल में एक गमला है जिसमें पौधे लगे हुए हैं।

जिसपे पांच छे आदमी बैठी हुए है और यहाँ पर एक बाइक भी है जो की रेड कलर की बाइक है।

यहाँ पर कैश पैसे निकलते है और यह जो गेट है वो शीशे की गेट है और इसमें ए.सी. भी लगी हुई है।

यहाँ पर पांच छे गाये है बैठी हुई है जो की सफेद कलर की है।

जैसे की पिक्चर में देख सकते है की यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेचू बना है।

यहाँ पर एक योगा का क्लास है यह हॉल में है।